ये एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसको ये बैलून से डेकोरेशन किया गया है जिसका--

ओर ये गोल फिसलपट्टी सी दिखाई दे रही है ये बड़ी सी --

एक दो लोग दिख रहे है एक बाहर ए_टी_एम के बाहर खड़े हुए है दो लेडीसे खड़ी हुई दिख रही है।

पेट्रोल पंप दिख रहा है मशीने दिख रही है पेट्रोल की ये --

जैसे बने दिख रहे है ये और ये बड़ी-बड़ी सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है बहोत दूरी-दूरी पर--

बड़ी सी एक नदी है इसमें बड़े बड़े से कुछ ये झरने से दिखाई दे रहे है हमें।